इसकी पूर्जा पूर्जा निकाल के अलग कर दिए गए हैं इसको मेकैनिक बनाते हुए बना रहा है गाड़ी को साफ और क्लीन कर रहा है .

सभी लोग खड़े हैं उसके आसपास रंगोली बनाई जा रही है। --

सभी लोग हाथ में हाथ जोड़े हुए हैं हाथ में कोई --

टंकी में तेल डालते हुए नजर आ रहा है एक लोग तेल डालते हुए--

बहुत सारे लोग सब दुकान लगाए हुए हैं खाने पीने की उसी पर सब लोग--

और घास लगी हुई है छोटी-छोटी सी और पेड़-पौधे भी लगे हैं।

बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है मंदिर में सभी लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं।

ये मंदिर बना हुआ है मंदिर काफी बड़ा है।

मंदिर में दो तीन तीन का मंदिर बना हुआ है .

ये एक बंदा है जो कि ढीले पर बैठा हुआ है आसमान और सब दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत दूर से पहाड़ी दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा है।

ये एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है और पीछे पीछे गार्डन और रोड दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रही है खेत भी दिखाई दे रहे हैं।

ये कुर्सी पड़ी हुई है एक रूम है रूम में कुर्सियां पड़ी हुई नजर आ रही है कुर्सियां--

शॉप है यह मॉल है मॉल में सारा सामान भरा हुआ दिखाई दे रहा है सब मॉल में भरा हुआ है बहुत बड़ा मॉल है यहां पे --

साबुन दिखाई दे रहा है बोतल है डिब्बा है सब बहुत सारे सामान भरे नीचे से तेल लगे हुए है .

सभी बच्चे सर पे टोपी लगाए हुए हैं काफी छोटे-छोटे बच्चे हैं और कुछ बड़े-बड़े भी बच्चे हैं।

फील्ड पड़ी हुई है जिसमें छोटी-छोटी घास लगी हुई है और मिट्टी पड़ी हुई है .

जो कि बहुत गेट गेट टाइप से बने हुए हैं जो कि बहुत सारे गेट बने हुए नजर आ रहे हैं काफी सुंदर सजा हुआ है उसके बगल में एक और छोटा सा बना हुआ है सजा हुआ है .

वो पानी पी बोतल से पानी पी रहा है।

योगा करने के लिए आते हैं अपना शरीर मेंटेन रखने के लिए ये एक लड़की है अ जो--

उठाती हुई दिखाई दे रही है।

ये एक घर बना हुआ है घर के सामने मंदिर बना हुआ है।

बाहर गार्डन टाइप से बना हुआ है जिसमें पेड़ भी लगे नजर आ रहे हैं और ये बीच में तुलसी माता का पेड़ लगा हुआ है।

एक पार्क है पार्क में बीच में पानी ताल टाइप से पड़ा हुआ है गार्डन टाइप से बना हुआ है इसमें--

एक कलर वाली सारी मशीनें हैं सभी ब्लैक कलर से पुती हुई हैं और एक दरवाजा लगा हुआ है जो कि दिखाई दे रहा है .

ये एक अ रूम है रूम काफी सुंदर और काफी अच्छा डेकोरेशन हुआ है रूम में ये कुर्सियां पड़ी हुई है और ये--

ये ये ये यहां पे बहुत सारे गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि बाइक है।

और अ ये कुछ बने हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें पानी भी आता है और --

रूम ए_सी लगी हुई है रूम में एक वॉच लगी हुई है।

ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं ऊपर पंखा लगा हुआ है।

ये अ बड़ा सा घर बना हुआ है घर के अंदर--

अंदर जगह है सामने पेड़ लगे हुए हैं झाड़ियां बनी हुई हैं।

बीच में और बीच में पॉट रखे हुए हैं जो कि छोटे-छोटे पॉटों में पेड़ रखे हुए हैं गमले बने दिखाई दे रहे हैं।

ब्लैक ब्लैक कलर के पत्थर बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं वाइट वाले छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं।